इस ऑफिस में एक टेबल और कुर्सियां दिख रही है।

इस ऑफिस में एक दीवाल पर व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है जिसपर कुछ लिखा हुआ है।

इस दुकान में बहुत सारी रैके बनी हुई है।

इस दुकान में बहुत सारे हैंगर भी दिख रहे हैं जिस पर कपड़े रखे हुए हैं और जमीन पर एक नीले रंग का कैरेट रखा हुआ है।

इस बिल्डिंग में एक ग्रिल लगा हुआ है।

यहां पर एक स्टेज दिख रहा है।

इस बैंक में एक काउंटर भी दिख रहा है जिस पर नकदी कैश लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

इस सड़क पर कुछ वाहने चल रही हैं।

और उसके बगल में एक बाल्टी रखा हुआ है।

इस तस्वीर में कुछ पेड़ भी दिखाई दे रही है।

सड़क पर कुछ मोटर साइकिलें चल रही है।

इस मॉल में बहुत सारे दुकानें लगी हुई है।

इस मॉल में बहुत सारी लाइटें जल रही है।

इस गार्डन में एक तालाब बना हुआ है।

यहां पर जमीन में टाइल्से भी लगी हुई है।

यहां पर एक एरोप्लेन दिख रहा है।

एयर एशिया डॉट कॉम लिखा हुआ है।

जिस पर मैक्स फिट लिखा हुआ है।

यहां पर एक बिल्डिंग दिख रहा है।

यह एक कैफे का दृश्य है।

यहां पर बहुत सारी लाइटें भी जल रही हैं।

यहां पर एक प्लेटफार्म दिख रहा है।

इस कमरे मे दो पंखे चल रहे हैं।

इस कमरे में एक शीशे का खिड़की लगा हुआ है।

यहां पर एक सफेद रंग का बिल्डिंग दिख रहा है।

रॉयल बुक डिपोट लिखा हुआ है।

यहां पर एक लाइट का खंभा भी लगा हुआ है।

दुकानों में स्टैच्यू रखा हुआ है।

दुकान के ऊपर एरो लिखा हुआ है।

यहाँ पर जमीन में टाइल्से भी लगी हुई हैं।

इस बिल्डिंग पर एक अमूल का पोस्टर भी दिख रहा है।

गार्डेन में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहाँ पर सड़क के किनारे एक लाइट का खंभा लगा हुआ है।